कलर लगा के है उधर में लाइट सब है अंदर में।

यहाँ में मुझे एक सुंदर सा एक घर दिख रही है जो कि बहुत मजा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग का रूम दिख रही है।

साड़ी पहन के ये दो औरत है कोट पहन के एक बंदा है जो शू पहन के है।

इस तस्वीर में मुझे एक सुंदर सा रूम दिख रही है जो की होटल है।

सब लगा के फिर घास भी--

अच्छा है उधर भी पिंक कलर का कुछ कपड़ा से ढक के है फिर ये थोड़ा काला में लाइक सब जगा के है लोहा का कुछ

नीचे में काऊ सब है पानी पीते हुए।

धागा बनाया हुआ पीछे में भी एक ठो है फिर पानी दिख रही है दूर दूर में जंगल है।

यहां में एक आदमी खड़ा है क्योंकि वो कुछ बेच रही है कंटेनर भी अलग अलग प्रकार की है।

बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जोकि बहुत सुंदर है कालर लगाके है।

येलो कलर का फिर उसका सामने एक बरा सा घास है और ये बागान का तरह बगीचा है।

दरमेपो से जहां में कपड़ा सब बांधे हुए हैं वायर भी दिख रही है।

इसके ऊपर दो किसीम का है एक कंटेनर छोटा सा करके एक चामच है उसके ऊपर मीठा है।

जा करके फिर उस तरफ एक बस्ती दिख रही है।

अंदर में मुझे टेबल सब भी दिख रहे हैं अंदर में फिर उधर में उसके सामने।

दूर दूर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रही जोकि--

फिर उधर में भी दिख रही है छोटा छोटा टीना वाला घर भी दिख रही है और यहां हमें में थोड़ा सड़क है पत्थर सब सब रख के--

जमीन पर पत्ति सुखा है ग्रास भी दिख रही है।

यहां मे जमीन में कुछ पेपर सब भी दिख रही हैं फिर पानी का उधर पत्थर सब भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिख रही है जहां में औरत है।

आदमी है जो कि प्रार्थना कर रही है जो कि अलग अलग प्रकार का ड्रेस पहन के।

बोतल है बोतल में बहुत अच्छा है उस तरफ टिशू पेपर के तरह मास्क है फिर उधर वॉल में सफेद कालर कलर का बनाया हुआ शीशा दिख रही है।